एक शॉप की दुकान के बाहर का फोटो है। ये येलो कलर का बोर्ड लगा है जिसपे --

पंखा लगा है व्हाइट कलर का कूलर रखा है व्हाइट कलर का सोनी लिखा हुआ है।

बड़े पेड़ लग रहें हैं सामने --

उसमे बड़े-बड़े पेड़ लग रहे है छोटे पेड़ है बादल हो रहे है।

बहुत बड़े बड़े पेड़ लग रहे हैं घाँस लग रही ये पेड़ के नीचे दो लड़के खड़े हुए हैं।